ये इमेज एक बिल्डिंग की है जो की होटल है। बाहर रेस्टोरेंट भी है बहुत सुन्दर दिख रही है।

ये इमेज है इसमें दिखाई दे रहा है जिसमें रंग-बिरंगी झंडियाँ लगी हुई हैं।

ये इमेज नदी या तालाब की है जो की शाम के टाइम की है इसमें एक टावर भी दिखाई रहा है वो बहुत सरे पेड़-पौधे भी बने हुए है।

इस तालाब या नदी के किनारे बहोत सारे घर भी दिखाई दे रहे है जो की बने हुए बहुत ही सुन्दर दिख रहा है।

ये इमेज एक ग्राउंड की है जिसमें एक घर बना हुआ दिख रहा है बस साइड में कुछ टेंट लगा हुआ है बहुत सारे पेड पौधे बने हुए हैं।

यह इमेज एक फिल्म के थीयेटार की है जिस पर रेड एंड ग्रीन कलर की बहोत सारी कुर्सियां लगी हुइ है।

ये इमेज एक तालाब की है जिसमे पानी भरा हुआ है आउटसाइड बहुत साडी घास उग रही है जो की और भी सुन्दर लग रहा है।